यह कोई क्लास रूम का तस्वीर है यहां पे एक बहुत बड़ा बोर्ड है और टीचर --

और एक सीढ़ी है लाल रंग का।

यहां पे बहोत प्रकार के बेसिन लगे हुए हैं।

यह एक फैक्ट्री का तस्वीर है।

यहां पर एक काले रंग की कार है और बहुत सारे बाइक ढाबा के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है।

यह एक भवन का तस्वीर है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां है।

यह एक उपहार के दुकान का तस्वीर है।

और यहां पे एक घूमने वाला झूला भी है।